है जो कुछ लोग लास्ट में बोर्डर तक दिख रहा है एक पे सब फोटो दिख रहा है जो ब्लू कलर के हैं।

क्रीम दिख रहे हैं वो एक आईने हैं।